यह एक बहुत ही बड़ा स्टेज का दृश्य है।

इस स्टेज की बहुत ही सुंदर से सजावट किया हुआ है।

इस स्टेज पे पर्दों से भी सजावट किया हुआ है।

पहाड़ के नीचे भी बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

काउंटर पर एक कैची और बहुत सारा कागज़ रखा हुआ है।

इस रोड के किनारे किनारे बहुत सारा दुकाने भी दिखाई दे रहा है।

रूम में लाइटे भी लगाई हुई है।

रूम में एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है इस रूम की दीवारें व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

सभी अलमारीयो में बहुत सारे डब्बे और सामान रखे हुए हैं।

यह एक सब्जी दुकान का दृश्य है।

व्यक्ति ब्लू कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ है।

घर की दीवारें व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

इस रोड के किनारे एक ट्रक लगाया हुआ है जो बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है।

रोड के किनारे किनारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम का दृश्य है इस रूम की दीवारे वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

इस रूम में बहोत सारा मशीन भी रखा हुआ है।

इस रोड के किनारे किनारे बहुत सारे घर और बिल्डिंग दिखाई दे रहे है।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य है।

इस फैक्ट्री के किनारे किनारे करकट भी रखा हुआ है।

मार्केट के किनारे किनारे बहुत सारे घर भी और बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस घर पे सेस्ट्रिंग लगाया हुआ है।

रूम में कांच का बॉटल भी रखा हुआ है।

दुकान के बाहर गेंदे के फूलों से सजावट भी किया हुआ है।

इस बिल्डिंग के बाहर की दीवारें मैरून कलर येलो कलर और व्हाइट से पेंट किया हुआ है।

इस रूम का फर्श ब्लैक कलर का है।

रूम में एक पंखा भी लगाया हुआ है।